सफाई कर रहा है ढेर सारा लेबर है मिस्त्री है ढेर सारा है कोई खड़ा है कोई बैठा है।

यहां रूहन चा सेंटर जा कॉफ़ी वाला दुकान है यहाँ चा मिलता है कॉफ़ी मिलता है।

आदमी बाहर में खड़ा है उसमे एक प्लेट जैसा बना हुआ है उसमे दाना दिया है खाने के लिए इधर केला का पेड़ है और बड़ा वृक्ष है बहुत घना है।

यह शर्ट सब रखा है एक बंदी सीट है काला रंग का है।

यह मिठाई का दुकान हैढेर सारा मिठाईया इसमे रसगुल्ला है लड्डू मिठाई है पेडा है काला रसगुल्ला है उजला रसगुल्ला है।